ये ना किसी जु की तस्वीर लग रही है जहां एक जिराफ नजर आ रहा है।

यह एक गार्डन या किसी रोड की तस्वीर है जहां एक फाउंटेन नजर आ रहा है कुछ बेंचीस नजर आ रही है लोगो बेठने के लिए कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं छोटे-छोटे पोधे नजर आ रहे हैं।

स्ट्रीट लाइट्स और वायरस नजर आ रहें हैं यहाँ एक आदमी बाइक पे नजर आ रहें हैं एक नॉर्मल ऑटो नजर आ रहा है।

सामने कुछ डिओज नज़र आ रही है ऊपर कुछ अ व्हाइट और ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है।

पीछे छोटी-छोटी घर नजर आ रहे है कुछ घास नजर आ रही है।